नजर आ रहा है और एक आदमी खड़ा है।

इसमें सारी दवाइयां मिलती हैं।

और यहां पे बोर्ड भी लग रहा है।

यहां बहोत बड़े बड़े फ्लैट नजर आ रहे हैं।

और बड़े बड़े डंडे से दिखाई दे रहें और एक--

और यहां पे आदमी भी आते जाते नजर आ रहे हैं।

बहोत सुंदर सुंदर दिखाई दे रहे हैं और एक मेज भी रखी हुई है।

यह किसी का हॉस्पिटल नजर आ रहा है।

मकेनिक की दुकान दिख रही है और यहां बहोत बड़ा बोरड भी लगे हैं।